ये चित्र एक लड़की नृत्य करती नजर आ रही है जो व्हाइट और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है पीछे किसी अ उसका बोर्ड लगा हुआ है।

इस चित्र में सामने नीला आसमान दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ पहाड़ नजर आ रहे है।

इस चित्र में कन्या निर्त्य कर रही है पीछे बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है।

इस चित्र में मन-- मूर्ति दिख रही है मंदिर का चित्र लग रहा है पीछे के तरफ पेड़ और सामने नीला आसमान नज़र आ रहा है एक व्यक्ति फोटो लेता न--

यह चित्र किसी पार्टी का दिखाई दे रहा है पीछे बहुत सफ़ेद और लाल रंग के गुब्बारे सजे हुए है ए अ बहुत सारे व्यक्ति खड़े एक दुसरे से बाते कर रहे है कुछ महिलाएं है हाथ में उपहार लिए हुए है।

इस चित्र मे एक सामने नीला आसमान और बहुत सुन्दर पहाड़ दिखाई दे रहे है एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति के सिर्फ हाथ फोटो लेते दिखाई दे रहे है और हरियाली बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है।

इस चित्र में लोग कुछ निर्त्य करते पुंगी बजाते नजर आ रहे है।

सेंटिंग ठुक रही है कुछ व्यक्ति काम करते नजर आ रहे है पीछे की और एक लाइट बड़ी नजर आ रही है।

चित्र नाय की दुकान की दिख रही है ऊपर वह पंखा और सफेद छत और नीचे एक व्यक्ति जाता दिखाई दे रहा है यहां पर कुर्सी पर कोई बैठा सामने टॉवल तांगा नजर आती--

चर्च का नजर आ रहा है पीछे एक पंखा लगा हुआ है बीच में एक आदमी कुछ पढ़ रहा है साईड में सब लोग खड़े हुए कुछ रख के पढ़ रहे है।

यह चित्र बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है यह किसी घुमने की जगह का है सामने ऊँचे ऊँचे पहाड़ सामने नीला आसमान और--

इस चित्र में भी पांच कन्या है निर्त्य करती नजर आ रही है पीछे बहुत अच्छी मूर्ति रखी हुई है और पीछे की पेंटिंग भी बहुत सुदर है निर्त्य ऐ लाल और नील रंग के वस्त्र पहने--

यहाँ परपल और औरेंज कलर के गुब्बारे लगे हुए है वो लड़के टीशर्ट नी- हरे रंग की पहन--

ट्रक का फोटो दिखाई दे रहा है पीछे नीला आसमान और आस पास हरे पेड़ दिखाई दे रहे है ऑटो बैटरी के भी दिखाई दे रहे है साम-साइड मे एक व्यक्ति खड़ा है और बहोत सारे व्यक्तियाँ आते जाते नजर--